ये किसी कहीं नई होटल हैं यहाँ सब में फर्नीचर में पूरा ढके हुए हैं।

यह डेकोरेशन ऐसी पसंद - पसंद से होते है जो की बहुत सुंदर दिखते हैं इसको देख के फिर कही और बुलाते हैं तो यह खासियत अच्छी सजाने की होती है।

अरगड़ पेटी गिटार सितार का दुकानें हैं यहाँ बहुत सारी ऐसी बाजा बजाने की सामान मिलता है।